रूम का कलर है पीला कलर --

खाने का सामान कुछ है।

इसमें पहाड़ जैसा कुछ है।

धूप थोड़ा आ रहा है।

मेरे ख्याल से ये एक मैकेनिक का शॉप है।

एक दो आदमी खड़े हुए--

एक लाइट है बहोत बड़ा सा।

ये पिक्चर में डेकोरेशन लाइट --

आगे में एक चर्च है।

और कुछ फूल वगैरा है साइट साइट में रखें हुए --

जिसमें बहोत सारे टाइप के चश्मे रखे हुए हैं।

और वो गोल चक्कर के बीच में एक मूर्ति है।